और यहाँ पे खड का भी घर हैजो की यह प्रकृति को दर्शाता हैऔर यहाँ पे पेड़-पौधे भी हैंजो की प्रकृति को अच्छे तरीके से दर्शाता है।